एक आदमी और एक औरत है बूढ़ी औरत और बूढ़ी--

बहोत सारे पेड़ पौधे बहोत बढ़िया दिख रहा--

ग्रीन कलर का टोटो है और बाहर स्कूटी एक्टिवा टोटो है होंडा वाला जंग --

लगा आदमी पूजा कर रहां है।

ऊपर एक गेट के पास है।

और ब बढ़िया झरना जैसा लग रहा है मस्त नजरा है।

ब्लैक कलर का पर्स --

बिरयानी प्लेट है चिकन बिरयानी जैसा लग रहा है इसमें खट्टापन ही है।

घर में बहोत सारे टेबुल है ब्लैकबोर्ड ब्लैक का है।

इसमें ये एक ठो बाइक है इसको पार्ट्स खोल गया है।

पेड़ पौधे हैं और वो गाय उसका बच्चा को दूध पिला रहा है।

लिखा है उसका बोर्ड है ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है।